एक मेला है। मेले में कई सारे बंदे हैं। कोई सरदार हैं कोई नया पगड़ी पहन रखी है।

बहोत बच्चे भी हैं एक तरफ देखे जा रहे हैं।

काफी सारी आंटियां खड़ी है पिंक साड़ी में ब्लू साड़ी में रेड साड़ी में एक अंकल खड़े है कोट पहन के--

यहां पे कपड़े मिलते हैं धोती मिलती हैं काम हो रहा हैं यहां पे।

और ये देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है अंदर उसमें पैर लटका के बैठे हुए हैं तो और लटक रहे हैं काम हो रहा है।

ट्रे में मच्छी डाल के बैठा हुआ बेच रहा है वो मच्छी पीले कलर की ट्रे में मच्छी हैं साइड में काली वाली मच्छी हैं।

कलरफुल टी_शर्ट पहन रखी है। पर्पल पैंट पहन रखी है।

ये एक घर है जिसके आगे तीन स चेयर लगी हुई है।

ये बच्चे का पार्क है झूला झूलने के लिए यहां पे हाथी है मोटरसाइकिल है अप डाउन वाला झूला है स्केटिंग झूला है।

लो कर रखा है। ज्यादा झूले लगे हुए है राइड कर रखा है। रास्ता अलग से बना रखा है इधर पार्क है। वहां पर पौधे लगे हैं।

ये एक स्कूल है यहां पर बच्चों के बेंच रखे है बैठने के लिए पढ़ने के लिए।

लगाने पे बहुत अच्छा लगेगा और बहुत बढ़िया लगेगा बहुत अच्छा जचेगा दरवाजा यहां भी लगेगा।

एक बाहर गाड़ी खड़ी है एक ये बहोत बढ़िया होटल बना हुआ है इसमें बहोत बढ़िया केयरिंग होती है।

टेबल के ऊपर दरवाजा रखा हुआ है उसपे अभी डिजाइन देगा।

और सामने एक दीवार है जो पीले रंग की है उसने अपनी खड़की करके अपने आप वेल्डिंग करी है बहोत बढ़िया वर्कर है।

किले मार रहे हैं एक बंदा ऊपर बैठा हुआ है नीचे एक हथोड़ी पकड़ा रहा है और एक काम कर रहे हैं और यह बढ़िया काम हो रहा है यहां पे।

ये माला है जिसमें रेड फुल है ऑरेंज फूल है।

खाली टायर है और चल रही है आदमी बैठा हुआ है।